और नदी के पास में चलने के लिए सुन्दर जगह है ।

गाड़ी के पास में ही एक वृक्ष है।

यह एक चर्च का चित्र --

दूसरे आदमी ने पीले रंग के पहने हुए है।